बीच में पानी जाने वाला बनाया हुआ है।

यहां पर मस्जिद का दृश्य देख रहा है।

गेट पर्पल कलर का लगाया हुआ है कुछ झूमर से सजाया गया है।

सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगाया हुआ है।

फुल का कलर है पिंक कलर का व्हाइट कलर का ऑरेंज कलर का।

नीचे छोटे छोटे घास लगाए हुए हैं।

कई सारा कुर्सी लगाया हुआ है कुर्सी रेड कलर की है बीच में टेबल लगाया हुआ है रेड कलर का।

पोस्टर पे कई सारा डिश का दृश्य दिख रहा है।

आगे में एक ठेला लगाया हुआ है।

चाना भी रखा हुआ है डाल रखा हुआ है।

और नदी के खाली जगह पर कुछ मछुआरे लोग हैं।

यहां पर दुकान का दृश्य देख रहा है।

हैंगर में कई सारा स्वेटर टांगा हुआ है।

यहां पर होटल का दृश्य दिख रहा है।

बगल में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं बहोत सारे इधर उधर तार लगाए हुए हैं तार ब्लैक है।

बड़ासा बेड है बेड पर बेड शीट कम्बल व्हाइट कलर का है।

कुछ टेबल हल्के ऑरेंज कलर के तो कुर्सी भी ऑरेंज है।

बगल में कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं और नीचे में कुछ रंग बिरंगे कचरे--

यहां पर एक स्कॉर्पियो का दृश्य दिख रहा है।

पीछे इधर उधर घास ये सब लगाए हुए हैं।

बगल में छोटा सा लोटा रखा हुआ है।

घर का पेंट ब्लू कलर का है औ--

सामने एक बड़ा सा ब्लू कलर का पोस्टर लगाया हुआ--

कपड़े का कलर व्हाइट है ग्रीन है रेड --